एक रेड कलर की बॉटल भी रखी हुई हैं।

इस तस्वीर में घना जंगल--

बहती हुई नजर आ रही है।